अ चिकित्सालय की बिल्डिंग का रंग सफेद और संतरी में है आगे काले कलर का ग्रील लगा हुआ है।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

तस्वीर में एक दीवार दिखाई दे रही है जिस पर सिलेंडर छपे हुए हैं।

के बाहर देखने पर बहोत सारी हरियाली दिखाई दे रही है।

सामने की तरफ कुछ गद्दों में भी डब्बे रखे हुए हैं और नीचे बहोत सामान फैला हुआ है।

तस्वीर में जगह दिखाई गई है जिसके बीच में बहोत सारे पानी भरा हुआ है।

फैक्ट्री के पीछे बहोत सारा जंगल दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ खंबें --

नीचे की तरफ बहोत मिट्टी दिखाई दे रही है।